गले डली हुई है। और पीछे में एक पेड़ खड़ा हुआ है। ऊपर में आसमान दिख रहा है।

वाइट कलर से पोता हुआ है बिल्डिंग पूरा।

और काउंटर में काँच के अंदर भी कुछ रखा हुआ है।

और कुछ और सूखे-सूखे काफी पुराने पेड़ दिख रहे हैं।

जहाँ पर ऊपर बोर्ड चिपका हुआ है।

और दूर में कुछ पेड़ दिख रहा है। जो आसमान दिख रहा है।

के सामने में एक ऑटो खड़ी हुई है।